दोनों तरफ हमें गमले दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें पौधे रखे हुए हैं हमें यहां एक पिंक कलर का गमला भी दिखाई पड़ रहा है।

हमें हर एक मैदान दिखाई पढ़ रहा है जहां पे बहुत सारे भूसे दिखाई पड़ रहे हैं पीछे बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है।

पीछे भी हमें बहोत सारी चीज रखे हुए दिखाई पड़े रहे है साइड में हमें एक सादा और काले रंग--

सामने भी हमे बहुत सारी गमले दिखाई पड़ रहे है और उसमे भी फूल रखे हुए है ।

कूल में बहोत सारे शीशे भी लगे हुए हैं सामने हमें एक दीवार दिखाई पड़ रही है जिसका रंग भूरा और लाल रंग में है।

हमें यहां एक बुक स्टोर दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम पापुलर बुक स्टोर है उसके नीचे बुक --

स्टेशनरी और गिफ्ट्स लिखा हुआ ही सामने हम दो इंसान दिखाई दे रहे है एक ने शर्ट पहन रखा है और दुसरे ने --

हमें यहां एक मैदान दिखाई पड़ रहा हैं जहां पे बहोत सारे घास फूस भी हैं और बहोत सारी लकड़ियां भी दिखाई पड़ रही है।

हमें यहाँ एक पूजा का महल दिखाई पर रहा है जहा पे बहोत सरी ओरते दिखाई पर रही है और कुछ इंसान भी दिखाई पर रहे है।

और हमें यहां एक स्कूल दिखाई पड़ रहा है यहां बच्चों के खेलने के लिए सामान रखा हुआ है।